ये इमेज में बहोत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में दिया जलते हुए दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में काला कलर का देम दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में ब्राउन कलर का पानी दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में तीन बच्चे दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में बहोत सारा कर्टेन्स दिखाई दे रहा है।

यह इमेज में एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में वॉल का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

ये इमेज़ में टासपैरेंट डोर दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे--

ये इमेज में बंबू वॉल दिखाई दे रहा है।

यह इमेज में ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में तीन घर दिखाई दे रहा है ये इमेज में--

यह इमेज में ब्राउन कलर का टीना दिखाई दे रहा है।

ऑरेंज कलर का होली दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में ढेर सारा ईटा दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में ढेर सारा बर्तन दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में व्हाइट और ब्राउन कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में टेंपल दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में ब्राउन कलर का स्टेचू दिखाई दे रहा है।

इमेज में ग्रे कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में एक लाइट पोस्ट दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में बहुत सारा ग्रीन कलर का ड्रेस दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में दो ब्रिज दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में रेड एंड येलो कलर का कार्टंस दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में लड़की का हाथ में घड़ी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर मे वॉल का कलर क्रीम दिखाई दे रहा है।

ए पिक्चर में कर्टन का कलर डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में ग्रीन कलर का बहुत सारा ग्रास दिखाई दे रहा है।